खंभे गड़े हुए दिखाई दे रहे हैं खभों पे बहुत सारे तार खींचे दिखाई दे रहे और सड़क के किनारे काफी सारे बिल्डिंगे भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

एक मकान दिखाई दे रहा है मकान के आगे बहुत सारे थ्रेसर रखे हुए दिखाई दे रहा है थ्रेसर का नीला कलर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है कार खड़े हुई दिखाई दे रही सड़क दिखाई दे रही सड़क पर दो आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग में एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा जिसपे एच.डी.एफ.सी. बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के नीचे बहोत सारे लोग अंदर जाते हुए दि --